यह एक केंप लगा हुआ है बड़ा-सा ग्राउंड दिख रहा है जहाँ दो व्यक्ति वार्म अप कर रहे है।

एक बगीचा नज़र आ रहा है वहाँ घाँस भी उगे हुए है।

कुछ स्तंभ लगे हुये है जो लाल कलर से रंगे हुये है लैम्प भी वहाँ नज़र आ रहा हैं।

वहाँ पे एक गेट नज़र आ रहा है। हरे भरे पेड़ दिख रहे है। दो इलैक्ट्रिक पोल दिख रहे है। और इलैक्ट्रिक के तार भी नज़र आ रहे है।